ये चित्र में एक बड़ी सी पटरियां हैं बहोत बड़ी जिस एक पटरी पे से ट्रैन जा रही है यल्लो और ग्रीन कलर की है ऊपर की तरफ वेरा है मट्टी है बहोत सारे --

ये चित्र मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग है और बहौत सारे कमाना हैं।

झाड़ा दिख रही है वाइट एंड ऑरेंज बना हुआ है कलर ।

ये चित्र एक क्लास रूम का है जहाँ पर बेन्चेज हैं और वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा ब्लैक कलर लगा हुआ है लाइट्स आ रही है।